एक गया दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इसमें एक बाइक दिखाई दे रही है जिसका कलर ब्लैक व्हाइट दिखाई दे आईना दिखाई दे रहा है इसमें।

हरा-भरा पेड़ दिखाई दे रहा है इसमें बेल्डिंग दिखाई दे रही है इसमें लोहे की बाउंड्री दिखाई दे रही है इसमें।

इसमें लो बैंच दिखाई दे रही हैं इसमें कुछ लीक हुई जानकारी दिखाई देगी इसमें छोटा सा बच्चा बना हुआ दिखाई दे रहा हैं।

हरे-भरे पौधे दिखाई दे रहे है इसमें पौधे का कलर व्हाइट और रेड दिखाई दे रहा है इसमें हरे-हरे हरे-हरे पौधे दिखाई दे रहे है इसमे खिड़की दिखाई दे रही है इसमें दरवाजे़ भी दिखाई दे रहे है।

यहाँ दिखाई दे रहा है इसमें ऑटो दिखाई दे रही है इसमें ऑटो का कलर ब्लैक और हरा व्हाइट दिखा वा पीला दिखाई दे रहा इसमें चक्के दिखाई दे रहे चक्के का कलर ब्लैक दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहा इसमें ह हरे कलर के तोड़ दिखाई दे रहे है इसमें सफेद और आसमानी कलर का बादल दिखाई दे रहा है इसमें हरे भरा पेड़ दिखाई दे रहा है इसमें रोड़ दिखाई दे रहा --